बैग लाल कलर के बाड़ी बुलू कलर के बाड़ी एगो आदमी --

और हरा-हरा घास बाड़ी |

इ बहुत सारा गाछी बाड़ी इ आसमान उज्जर बा --